यहां अम्म बड़ा तरह बना हुआ है और यहां टूटा हुआ एक है।

ये एक साफ रोड है यहां पर आदमी एक मास्क डाला हुआ हाथ में सूटकेस उठाए जा रहा है और एक बड़ा टॉवर है बाइक और कार खड़ा हुआ है गेट बड़ा है और पेड़ पीछे लगे हुए हैं।

ये गार्डन है यहां एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और पीछे भी एक पेड़ लगा हुआ है यहां बच्चे खेल रहे हैं कुछ लोग अ टेंट की तरह की डाला हुआ है चार डाल रखे हैं बैठे हुए हैं।

यहां पे एक फायर एक्सटीगेशर बहुत सारे रखे हुए हैं कुछ टूटे हुए हैं कुछ वायर बाहर हुए हैं रेड कलर की है और अह ब्राउन कलर की टेबूल लगे हुए हैं और व्हाइट कलर का दीवार पे पेंट मारा हुआ है।

यहाँ पे एक सलोन है यहाँ बहुत सारी वायरिंग जा रही है और यहाँ स्टार बर्नर का सलोन है रविंद्र का एक दुकान है और रेड कलर कार और व्हाईट कलर कार खड़ा हुआ है बहुत सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं और ग्लास की अ और ग्लास की दुकान है की।

ग्रीन कलर का लाइट भी सजा हुआ है।

और कोई आदमी लेने नहीं आ रहा है और ये एक थेला बड़ा है।

एक ऑफिस में ऑफिस के नए सेल्स बना हुआ है उसमें लोगों को उन लोगों की जगह बनाए गए और ऊपर भी सेम इसी तरह सीलिंग पर फैन दिखाई दे रहा है और फैन कलर ब्लू है।

कोट भीं लगा हुवा हैं और यहाँ फिर ग्लास जोर है ग्लास जो के अंदर एक पुतले को पहनाया गया गया है।